यहाँ हमारे सामने एक स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे रही है जो की एक प्रैक्टिकल लॅब की है ये लॅब एक केमेस्ट्री लॅब दिख रहा है क्यो कि यहाँ पर बॉटल्स मै बहुत सारे कैमिकलस दिखाई दे रहे है।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

यहाँ स्क्रीन पर हमारे सामने एक इमेज दिखाई दे रही है जो की क्लास रूम के अंदर की है जिस पे डेस्क और रेड कलर की बेंच रखी हुई है।

ये मंदिर का पेंट थोड़ा गोल्ड कलर का है मंदिर के काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पे कुछ बिजली के खंबे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेंज दिखाई दे रही है जो की एक क्लासरूम की है जिसमे डेस्क और बेंच रखे हुए है।